एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसको लाल रंग से पेन्ट किया गया है । और कुछ स्थानों से इसके पेन्ट निकल चुके हैं और वहाँ पे काले-काले रंग दिखाई दे रही है ।

यह ढलाई करने वाली मशीन है अगल बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें शीत हवा ले जाने के लिए बोहोत सारी स्थान बनाए गए है यह पूरा तरह से लोहे का बना हुआ है जिसपे बहोत सारी नटे वगेेरा कसी गई है यह देखने में बोहोत भारी लग रहा है।

यह पहाड़ पर से ली हुई इमेज है। नीचे एक रोड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह देखने में बहोत ही सुंदर स्थान प्रतीत--

यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग जैसी कुछ दिखाई दे रही है जो की सफेद कलर से पेंट किया गया है और जिसका ज्यादातर पेंट अब निकल चुका है।

बहुत सारे केले ठेले पे दूसरी बहुत सारी जगहो पर तांगे गए हैं।